डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल है यह स्कूल बहुत ही बड़ा है।

ये पत्ता गोभी लगाई गई है।

यहाँ प्लेटफार्म में टिकट लेके --

सेलून में बाल कटाए दाढ़ी बनाए सभी तरह के कार्य हो --

फूल इस रोड पे गीले हुए है |

एक किताब की दुकान है इस किताब की दुकान में बहोत सारी --

क्लास की किताब मिलती है यहाँ।

रंगोली बहुत ही अच्छा बनाया है यहाँ पे मैम --

बाल कटाई कर रहे हैं।

यह आदमी कर रहा है एक आदमी कुर्सी पे --

बहोत सारे लाइट बाज़ार में जल रहें हैं |

आते हैं यहाँ एक तुलसी पिंडा भी --

आए हुए हैं बाल कटाने दाढ़ी बनवाने।